दुकान में बहोत सारी टाइल्स भी रखें है।

इस फोटो में एक क्रीम जैसा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में लाइटिंग भी जल रही है।

इस फोटो में बहोत सारे कप भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में झरना पेड़ पौधे और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक शॉप है।

इस फोटो में भगवान की एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में भगवान ने बहोत अच्छा श्रृंगार कर रखा है।

इस फोटो में एक ऑफिस बना हुआ है।

इस फोटो में लैपटॉप भी रखा है।

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं इस फोटो में--

चेयर भी रखी हुई है फोटो में--

इस फोटो में तोतों का मुंह लाल भी है।

इस फोटो में लड़के ने कैप भी पहनी है।

बहोत सुंदर सीनरी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आदमी ने पीला कुर्ता पहना है।